दरवाजा इसका कांच का बना हुआ है बहुत सारे लाइटे जल रही है।

ये एक लाल कलर की टोटो गाड़ी हैं और पीछे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए --